यहाँ पर टेबल मेज़ मेज़ वैगरह भी दिखाई पड़ रही है यहाँ से साफ नजर आ रही है यहाँ पे बहुत सफ़ेद है एकदम बहुत बड़ा भी बना दिखाई पड़ --